यह देखने में ही सुन्दर नहीं बल्कि यहाँ बहुत ही आस-पास बहुत ही ब्यूटी और बहुत ही पेड़-पौधे लगे हुए है इसके सामने पहाड़ भी है और इसके बीच में नदी भी एक पार हुई है जो बहुत दिखने में बहुत सुन्दर और बड़ी है ।

यह दिखने में ही बढ़ियाँ नहीं बल्कि यह पुरे का पुरे बिल्डिंग ही अच्छा है इस वाइट कलर से पेंट किया गया है यह दो फ्लोर का है जहा बहुत सारी फैसिलिटी लगी हैं ।

बहुत दूर-दूर से लोग अपने फैमिली के साथ घुमने के लिए आते है और बहुत ही मजे करते हैं।